काफी सारे बाइक भी यहाँ पे ख-लगी रहती है बहुत सारे आदमी बाज़ा --

यहाँ पे काफी सारे लड़के इस मैदान में खेलने के लिए आये है यह मैदान बहोत बड़ी है यहाँ पे बहोत सारे घाँस भी लगे हुए है।

एक देवी माँ की मंदिर है यह माता शेरावाली की मंदिर है यहाँ पे दो बाघ के स्मारक बने हुए है।

एनिवर्सरी पार्टी का केक भी इस दुकान में लोग खरीदने के लिए आते है।

यहाँ पे बहुत सारे छोटे-छोटे मछली है। बहुत सारे आदमी छोटे मछ्ली को खरीदते है। यह छोटे मछली बहुत ही --

मंदिर में आते है यहाँ पे काफी सारे लोग पूजा कर रहे है मंदिर बाजार में है।

आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं यह स्टेज पे डी.जे. लगाए गए हैं पंडाल बनाए गए हैं ।